जिम के फ्लोर पर ब्लैक और वाइट कलर के मार्बल्स लगे हुए हैं।

क्यूपमेंट में वेट्स का कलर ग्रीन और पिक है।

दुकान में एक ग्रीन कलर टेबल लगी हुई हैं जिसके सामने एक ग्रे कलर की चेयर है।

यह एक रिलिजियस प्रैक्टिस की फोटो है।

उनके पीछे व्हाइट कलर का एक बड़ा सा विंडमिल है।

यह चित्र रसोई घर का लग रहा है।

वॉल से ही लग कर तीन से चार कार्पेट रखे हुए हैं।

ये ग्राउंड के बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे है।

के अंदर ही कहीं कहीं पर छोटे छोटे पोल्स लगाए हुए हैं।

टेंट में ऊपर की तरफ व्हाइट और रेड कलर से सजावट हुई है।

नीचे ग्राउंड का कलर ब्राउन है और वहां पर ग्रीन कलर की कार्पेट बिछाई हुई है।

शॉप के बाहर ब्लू कलर का शटर है जिसको ओपन किया हुआ है।

ऑफिस के बालकनी में ही एक छोटी सी लाइट भी लगी हुई है।

पूरे थीम का कलर व्हाइट है।

सामने मिरर है और मिरर के बॉडर रेड कलर के हैं।

चित्र में एक रूम दर्शाया है जिसमें एक व्यक्ति व्हाइट शर्ट में जिसके पॉकेट में फोन है।

रिवेड के दूसरे तरफ बहुत सारे पेड़ है और बहुत सारे घर देखे जा सकते हैं।

उनके चार हाथ है जिसमें से एक हाथ में चक्र है और एक हाथ में शंख है।

चित्र में मंदिर के जैसा स्ट्रक्चर दिखाया गया है।

लाल के स्ट्रक्चर के सामने ही बहुत सारे लोग देखे जा सकते हैं।

चापने फ्लोर पर व्हाइट टाइल्स लगी हुई है जिस पर सीलिंग बल्ब्स के रिफ्लेक्शन है।

मकान के अंदर दो मजदूर देखे जा सकते हैं जिसमें से एक नए पर्पल कलर की शर्ट पहनी है और दूसरे ने येलो कलर के कपड़े पहने हैं।